उतने टाइम में यात्री यहाँ से उठ के अपने-अपने टर्मिनल पर जाते हैं और फिर वो हवाई जहाज में बैठ के अपनी यात्रा करते है।

हालांकि पहले बहोत ज्यादा जाम लगता था अब धीरे-धीरे जाम की संख्या बहोत कम हो रहा है।